यहाँ पर कई लोग अ जगह दिख रही है सड़कें दिख रही हैं लोग आते जाते नजर आ रहे हैं एक मंदिर दिख रहा है एक राघव ट्रैडरस दिख रहा है पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

फोर्टी नाइन का है जिओ फ़ोन रखा है और वीवो फ़ोन रखा है बहुत सारे फ़ोनस रखे हुए है कलर्स रखे हुए है।

कुछ पत्ता गोभी छोटी दिख रही है कुछ पत्ता गोभी बड़ी दिख रही है और फूल दिख रहे है अंदर फूल है बाहर पत्ते से दिख रहे है बहोत सारे पत्ते गोभी है।

यहाँ एक वीवो फ़ोन लिखा हुआ है कवर्स रखे है बहुत सरे रेयलमी का फ़ोन रखा हुआ है।

फिर से प्लाई दिख रही है छोटे-छोटे खन्स बने हुए है बैटमिंटन रखे हुए है बेटस रखे हुए है ब्लैक कलर के--